वहाँ पर एक स्टेज दिखाई दे रही है स्टेज पे --

बाहर की तरफ एक लाल बोर्ड दिखाई दे रहा है जिस पर स्वरूचि रेस्टोरेंट लिखा हुआ है।

टेबल के पास में कुर्सी लगी हुई दिखाई दे रही है। कुर्सी पर दो लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर कुछ लड़कियां बैठी हुई दिखाई दे रही है। लड़कियां जमीन पर बैठे हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर एक बैकरी दिखाई दे रही है।

मिठाई और केक लाल ओर पीले और कौले काले कलर के दिखाई दे रहे हैं।

पास में मशीन दिखाई दे रही है एक कांच दिखाई दे रहा है।

और एक बहुत ही बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है जिसकी पत्तियां नीचे तक लटकती हुई दिखाई दे --

खंबा दिखाई दे रहा है जिस पे एक बड़ी सी बीपी लगी हुई दिखाई दे रही है। तार दिखाई दे रहा है।

उसके बाल ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है नीचे एक झंडा दिखाई दे रहा है।

टेबल और कुर्सी रखी हुई दिखाई दे रही हैं। टेबल पर कुछ खाने का सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

बाहर भी एक डस्ट्बिन रखा हुआ दिखाई दे रहा है। एक काउंटर भी दिखाई दे रहा है।